यहाँ पर एक रथ रखा है जिसमें बहोत सारी चमचमाती लाइट लगी हुई है यहाँ पर ऑरेंज कलर से झंडे फैरे हुए हैं।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

ऊपर वाले फ्लोअर पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पर एक फोर व्हीलर लग रखी हुई है यहाँ पर एक सफेद कलर से बाउंड्री बनी हुई है ।

छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत ही जनसंख्या अन व्यक्ति खड़े हुए हैं ।

और बहुत सारे पंखे भी लगे हुए है एक बैनर लगा हुआ है और यहां पर हरे कलर से दीवाले बनी हुई है यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है ।

जो कि सफ़ेद कलर से है जिसके ऊपर स्वागतम लिखा हुआ है एक यहां पर छड़ लगी हुई है |

अ मेडल है जो कि कत्थे कलर से गोल्डन कलर से डिजाइन बनी हुई है एक स्टील का डब्बा रखा हुआ है बहुत जो की मूर्ती ब्लैक कलर से --

नाव के बाहर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और सभी वोटर एक दुसरे से कॉम्पिटीशन कर रहे है ।

यहाँ पर एक लाइट वाला गेट लगा हुआ है जिसमे झीलमिलाती लाइटे लगी हुई है यहाँ पर अन्दर भी बहुत सारी लाइटे लगी हुई है जो कि --